यहाँ पे बहु सारी बसें लगी हुई हैं जो गया से जहांनाबाद पटना रांची की तरफ --

ये एक कोचिंग क्लास है जहाँ पे नाइन टेंथ की पढ़ाई करवाई जाती हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लड़के लडकियाँ बेठे हुए हैं।